कुछ युवतियां ग्रुप में नृत्य करने का प्रयास कर रही हैं।

इस दृश्य में एक बड़ा सा गवर्नमेंट व्हीकल कर क एक बस है जिसके ऊपर लिखा है बिलगावी तो धारवाड़ वॉल्वोऊऊऊ कर क।

दृश्य मे एक बहुत बड़े से बस स्टेशन या रास्ते का चित्रण दिखाया गया है जहां से एक बस गुजरती हुई नजर आ रही है और एक व्यक्ति ट्रैवलिंग बैग लेकर जा --

द्रुश्य में एक बड़ेसे खूबसूरत मकान को बोहत बढ़िया लाइटिंग से सजाया गया है ऐसा जान पड़ता--

जैसे शादी समारोह का पिक है। बाहर एक दूल्हे की कार खड़ी हुई नजर आ --